ई त फल के दुकान बा भईया। बहुत सुंदर बा अच्छा दिखत बा। आम ह --

लगता कउनो ऑफिस ह भैयाबहुत सुन्दर ऑफिस बाटे ईटा से जुड़ैाईल बा बहुत बढ़िया गेट भी बा और पेड़ पौधा भी बा सफाई सु सुन्दर भी बा एकदम स्वच्छ बा।

हुत बढ़ियां ढाबा बा भईया। चितकुट ढाबा। यहाँ हर तरह का भोजन मिलेला भईया। सब कोई भोजन क आनंद लेला। बहुत बढ़िया --